रेड कलर का पोस्टर दिख रहा है।

यहां येलो कलर की दीवार दिख रही है।

खिड़कियां दिख रही हैं यहां--

यहां एक घर दिख रहा है।

कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

यहां कुछ लोग दिख रहे हैं।

यहां पानी दिख रहा है।

यहां घास दिख रही है।

कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

चीनी के गुड्डे दिख रहे हैं यहां वाइट कलर की दीवार दिख रही है।

एक बड़ा गेट दिख रहा है।

इस चित्र में बहुत सारी बस --

कुछ लाइट्स दिख रही हैं यहां--

एक पेट्रोल पंप दिख रहा है यहां--

कुछ पेड़ दिख रहे है यहां कुछ पोस्टर दिख रहे हैं।

यहां कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

यहां कुछ लोग दिख रहे हैं।

काम करते दिख रहे हैं यहां एक दीवार--

एक बड़ी माला दिख रही है यहां बहुत सारी बिल्डिंग दिख रही है।